जहाँ पर दो ग्राहक तथा एक विक्रेता दिखाई दे रहे हैं।

तथा इसके सीलिंग को भी सीलिंग --

एवं कोर लर्निंग लिखा हुआ है।

कंबल पे दो तोलिया रखा हुआ है जो कि सफेद रंग का है।

जहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं।

सारे पेड़ों को नीचे से सफेद रंग से पेंट किया गया है।

इस होटल का नाम मां तारा है।

इस गेट के ऊपर में देवघर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है।

गेट के बाहर की ओर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है।

था यहां पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक दुकान है जिस पर स्नैक बार लिखा हुआ है।

तथा यहां पर कुछ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हार्डवेयर की दुकान है।

इस दुकान में एक स्टूल भी रखा गया है।

इस दृश्य में एक टोटो का शोरूम दिखाया गया है।

यह एक कंप्यूटर लैब है।

जिसमें एक शटर लगाया गया है।

दरवाजे में एक नीले रंग का स्टीकर भी चिपका हुआ है।

जहां पर एक लड़का खड़ा है।

यहां पर एक टेबल रखा हुआ है जिससे चारों तरफ से फूल एवं बैलून से सजाया गया है।

इसकी दीवाल के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया है।

पोस्टर के बगल में एक फोटो भी लगाया गया है।

इस सड़क के किनारे एक टी स्टाल भी लगा हुआ है।

इस एकेडमी को सफेद रंग से पेंट किया गया है।

दुकान के सामने पीतल का लोटा भी दिखाई दिया जा रहा है।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है।